ऊपर नीला आकाश है अभी उस पे छत नहीं ढली है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी का किनारा है जहाँ पर दो-तीन बोट रखी हुई है और कुछ सूख रहे हैं।

यहां पर एक चिड़ियाघर दिख रहा है जहां पर लोहे के रैलिंग के अंदर एक जिराफ दिख रहा है जिराफ--

यहाँ पर एक खेल का मैदान दिख रहा है जहाँ पर कुछ लोग खेल रहे हैं। एक लाइट वाला लम्बा ऊँचा --